यह एक सड़क है इस सड़क पर ए --

यह एक तालाब है। यह तालाब का काफी बड़ा है। इस तालाब में मछली भी है। इस तालाब में --

एक घर का काम हो रहा है। इस मैदान में पिलर बना रहा है। यहां पर पिलर लोहे की बन रही है।

यहां पर मिस्त्री और लेबर खड़े हैं यह घर --

भवन है यह एक सरकारी भवन है इस भवन पर राजकीय अद्योगी प्रशिक्षण संस्थान लखीसराय लिखा हुआ है यहां पर बहुत से लड़के --